यह एक अ मंदिर का अ फोटो है जिसमें की जय श्री राम गेट के बाहर लिखा हुआ है| एक मंदिर इ मंदिर में जो है घण्टी टंगी हुई है।

इस इमेज में एक छोटी सी दुकान दिख रही हैजिस पर एक पीला बोर्ड लगा है और उस पर लिखा है गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक की दुकान।

इस इमेज में एक मैदान दिख रहा है जिसमें की हरे-हरे घांस है और मकान की तरफ बॉउंड्री उठी हुई है जिसमें बहुत सारी बकरियाँ चर रही है।

यह इमेज पैंटालूंस शोरूम का है| एक बड़ी-सी बिल्डिंग इस इमेज में दिखाई दे रही है जिसके बाहर कुछ लोग खड़े हैं गाड़ियां लगी हुई है।

और लोग खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं।

टेबल के बीच में एक जग रखा हैं।

बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ है विशाल मेगा मार्ट ।

इस इमेज में एक गेट दिखाई दे रहा है बड़ा-सा गेट जिसके बाहर लिखा है स्थापित उन्नीस सौ सोलह। उसके बगल में लिखा है गांधी स्मारक इंटर विद्यालय जहानाबाद वी.टी. स्कूल ।